खंभे दिखाई दे रहे हैं बिजली की तारें दिखाई दे रही है यहां पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं यहां पर मीठ्ठी दिखाई दे रही है ठीक है।